और कुछ औरत दिख रही है और कुछ नर्स नर्सिंग दिख रही है जो कि ग्राहकों से बात कर रही हैं।

और इसके आसपास भी मुझे कुछ व्हाइट से बोर्ड से दिख रहे हैं।

यह एक लग्जरी शॉप है।

और कुछ रेड कलर की कुर्सियां भी दिख रही है।

और कुछ आदमी दिख रहे है और आसपास पेड़ पौधे दिख रहे है और पीछे एक स्कूल दिख रहा है।

और इसमें कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं और एक पेड़ा है उसकी टहनियां जो दिख रही हैं।

जिसमें कुछ समान दिख रहा है मुझे।

यह एक यह एक बिना छत का घर है और इसमें कुछ थमले हैं और कुछ मूर्तियां है।

और कुछ मैडम दिखाई दे रही है और कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

और इसके आस पास मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

इसमें कुछ गाड़ियां खड़ी है और एक साइकल खड़ी है।

यह एक बेडरूम है और इस बेडरूम मुझे एक बेड दिख रहा है।

कुछ गाड़ी इसमें सफेद कलर की है और कुछ गाड़ी इसमें व्हाइट कलर की है। इसमें दो है।

और इस दुकान पर मुझे एक आदमी दिख रहा है जोकि बैठा हुआ है और बराबर में एक दुकान है।

यह एक दुकान है और मुझे इस दुकान में कुछ सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

समान जैसे कमला पसंद और अर्जित की पुड़िया भी दिखाई दे रही है और एक भगोना भी दिखाई दे रहा--

इसके मुझे कुछ आस पास पेड़ भी दिख रहे हैं और इसमें बीच में एक डोल है।

और इस तस्वीर के नीचे मुझे एक आदमी दिख रहा है।

इस फ्रेंडशिप डे पर मुझे कुछ बलूंस दिख रहे हैं जो कि अलग अलग कलर के है कोई येलो कोई रेड कोई ग्रीन ।

यह एक घर है और मुझे इस घर मे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।